ये काफी पुराना किला या महल का तस्वीर लग रहा है अ- जो टूट फुट गया है।

और ए_टी_एम के अंदर का कलर क्रीम है सामने स्क्रीन नजर आ रहा है नीचे कुछ बटन वगेरा--

बाहर दो लोग बैठे हैं बाइक के ऊपर जो वाइट कलर का टी- शर्ट पहने हैं और एक स्कूटी भी खड़ा है अगल-बगल कुछ सामान--

और ल-लाइटिंग किया हुआ है काफी अच्छा आगे दो चेयर सामने रखा हुआ है दरवा--

गेट के लेफ्ट साइड में एक डॉगी है बड़ा सा पेड़ है गेट खुला है अंदर जाने के लिए।